यहाँ पर नारियल के झाड़ है बहुत सारे और यह कॉरपोरेशन ऑफिस है कॉरपोरेशन ऑफिस में नागपुर के जितने भी रस्ते बनाने के --

ती ये जैसा धान को चावल को अलग करने के लिए भी क्रशिंग किया जाता है गऊ को आटा बनाने के लिए भी क्रशिंग किया जाता है।